पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे साइड में बहुत सारे--

लगी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी--

ऐ पहन करके खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बस स्टैंड है।

यह एक बाइक की गैरेज है।

यह एक हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल का नाम --

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लिखी हुई दिखाई दे रही है।

और सामने ए यूनिट ऑफ --

यहां पे बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आए हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

पीछे ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

उस पार्क में एक झूला है।

ए पेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे एक पेड़--

इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।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

सामने रोड भी दिखाई दे रही है रोड के ऊपर दो कार खड़ी हुई दिखाई दे एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की कार दिखाई दे रही है आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगी हुई--

दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारे गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे तीन चार लोग--

यहां पे जाने के लिए--

भी दिखाई दे रही है।

पत्थर के ऊपर लाइटिंग --

यहां पे बहोत सारे टेबल --

और आस पास लाइटिंग --

लगी हुई दिखाई दे रही--

और छोटे छोटे गमले में--

व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है और ब्लू कलर में भी लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे लोग--

नहाने के लिए आए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग--

रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक फिसलन पट्टी भी दिखाई दे रहे इस पार्क में बहोत सारे लोग आए हुए दिखाई दे रहे आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है छोटे छोटे--

ऊपर एक पंखा लगी हुई दिखाई दे रही सामने एक --

व्हाइट कलर का बोर्ड --

पेड़ भी दिखाई दे रहा--

इस कॉलेज में बहुत सारी खिड़कियां--

कॉलेज का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे दो औरतें भी--

कॉलेज के सामने बहुत सारे लोग--

फिल्म देखने का हाल है।

और यहां पे दो खंबे भी हैं।

गे हुए दिखाई दे रहे हैं।